इमेज एक में कप दिखाई दे रहा है कप के अन्दर कुछ तरल पदारथ नज़र आ रहा है यह चाय हो सकती है।

उस बन्दे ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और वह कोई काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर और भी चीजें हैं।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

इस इमेज में बहुत पानी दिखाई दे रहा है। ये कोई दरिया हो सकता है या ये कोई नदी हो सकती है।

इस इमेज में किसी रेलवे स्टेशन का कुछ दृश्य नजर आ रहा है। यहाँं पर रेलगाड़ी की पटरिया नजर आ रही --

यहां पर दो स्त्रियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं उन स्त्रियों नें सिर पर कुछ उठाया हुआ है।

इस इमेज में एक माला नजार आ रही है इस माला को फूलों से बनाया गया है।